इ गेट पे बहुत सारे लोग सीढ़ियों पर बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहत है।

ये एक टी.एम.डबल्यू. का फोटो दिखाई दे रहत है इ पूरा सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा जिसकी सीटे --

समोसे कचोरी भी होटल के --

दुकाने दिखाई दे रहत थे जिनकी शटर बंद दिखाई दे रहा है एक पेड़ देख सीधा-सीधा लम्बा --

ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहत एक गाड़ी जाती दिखाई दे रहत।